उसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है बहोत बड़ी सी --

यह एस_बी_आई ए_टी_एम है और इसमें एक लोग अंदर है।

पानी की बोतल रखी हुई है साइड में।

जो कि काले कलर के है दोनो पहिये।

दोनों वॉल बेसिन में एक एक टोटी लगी हुई है।

ऊपर एक और बोर्ड लगा हुआ है लाल कलर का एयरटेल फोर जी का।

व्हाइट कलर की छत है और जिसमें लाइटें लगी हुई है।

यह एक बिल्डिंग बनी हुई है व्हाइट कलर की।

और गेट है काले कलर का अपार्टमेंट का --